दारू मशीन चल रहा है आ_रो मशीन सामने।

नीचे पर पलस्तर किया गया है नया ईटा बिछाया गया है।

यहां पे तेल की टीबा है और फर्चून के सामान सब दिख रहा है दुकान में।

मैदान दिख रहा है मैदान के अंदर भि घर बना हुआ है घर मे मितलाले लगा हुआ है जो हरा कलर का है।

एक आंटी है जो झाड़ू लगा रही हैं। यहाँ पर पार्क है पार्क के अंदर कुर्सी रखा हुआ है घास फूस बहुत सारे दिख रहे है। और यहाँ पेड़-पौधा भी दिख रहा है। आसमान नहीं दिख रहा है।

जो अजीब टाइप के दिख रहे है। यहाँ पे एक नारियल का पेड़ है वो भी दिख रहा है। अंटी जी झाड़ू हाथ में दिख रे उ भी झाडू लगा रहे है।

फिर भी है फ्रिज है फ्रिज के अंदर लाइट लगा हुआ है लाइट बर रहा है शीशा है शीशा की गेट है यहां पे--

और लाइट सब बर रहा है और पलस्तर किया गया रूम है और अंदर बहुत सारी सब्जी वब्जी है हरा सब्जी।

और एक जिम करे बैलून से बहोत हरा कलर नीला कलर वाइट कलर ब्लैक कलर --

ब्लू कलर के ही यहां पे जिम क्लास पर बहुत सारे आदमी जिम भी कर रहे है।

यहां पर बने हुए हैं टी_शर्ट हाफ पहने हुए हैं।